यह एक दुकान है जहाँ एक शीशे के अंदर कोई एक स्कूटी खड़ी हुयी है अंदर एक आदमी खड़ा है साइड में बेंच के|